यहां एक ग्राउन्ड पे यहां पिच बनी हुई है जो कि गेट से दिखाई दे रही है।

और ऊपर गईया बनी हुई एक कृष्णा जी की मूर्ति है। इस पे जय राम लिखा हुआ है।

यह एक स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सलीमपुर हमीरपुर लिखा हुआ है।

यह एक खाली मैदान है। मैदान में यहाँ आसपास --

और इसमें सेंटीमीटर लिखा हुआ है। यहाँ एक सीढ़ी दिख रही है और यहाँ पेड़ दिख रहे हैं।

जो ये सारे सामान खजूर के बने हुए हैं और यहाँ एक चेयर रखी है और --

यहाँ एक पोस्ट ऑफिस दिख रहा है जिसपे डाक घर लिखा हुआ है।

कुछ अ सामान मतलब रेत रखी हुई है। यहाँ एक अ दीवार बनी हुई है।

यहाँ एक दरवज़ा जो की सेवन लिखा हुआ हैं बंद दिख रहा है। खिड़की दिख रही हैं और यह एक दिख रही है।

यहां एक जुलूस निकलता हुआ दिख रहा है तथा यहाँ पर कुछ लोगों का छत पर भी दिख रहे हैं।

यह एक मल्टी दिख रही है तथा इसपे ब्लॉक लिखा हुआ है।

यहाँ पार्किंग में साइकिल रखी हुई है एक मोटरसाइकिल है और एक मोटरसाइकिल से लड़के जाते दिख रहे हैं।

इस्पे ग्रीन चद्दर दिख रही है एक पाई दिख रहा है तथा इसके नीचे यहाँ एक पेड़ दिख रहा है।